सामने की तरफ खेलने वाले खिलौने भी रखे हुए हैं।

इधर साइड स्टेयर्स नज़र आ रही हैं।

यहां पे बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

ऊपर के साइड बैलूंस भी रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

एक गार्डेन बना हुआ है।

हमें इस फोटो में एक बर्बर शॉप नजर आ रही है।

बंधन बैंक का पोस्टर नजर आ रहा है।

चारो तरफ पेड़ नजर आ रहे हैं।

हमें इस फोटो में फ़ फल की दुकान नजर आ रही है।

स्कैनर क्यू_आर भी रखा हुआ है सामने दो लोग खड़े हैं।

यहां पे एक मशीन रखी हुई है।

और बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

हमें इस फोटो में बहुत सारी डक नजर आ रही हैं।

घर के ऊपर दो टंकी भी रखी हुई हैं।

दीवार पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए है।

दो कुर्सियां भी पड़ी हुई है।

इधर एक रेड कलर मे मैम खड़ी हुई है।

पीछे के साइड बिल्डिंग बनी हुई हैं।

मेडिकल का सिस्टम रखा हुआ है।

हमे इस फोटो में एक नर्सरी का दृश्य दिखाया गया है।

यहां पे बहुत सारी ज्वैलरी रखी हुई हैं।

साइकिल और स्कूटी बाइक भी खड़ी हुई हैं।

उपर न्यू ज्ञानी जी का ढाबा का पोस्टर लगा हुआ है।

जहां पे खीरा भिंडी शिमला मिर्च इत्या रखे हुए है।

हमें इस फोटो में एयरपोर्ट जैसा नजर आ रहा है।

हमें इस फोटो में मारुति सुजुकी अरेना का एक एजेंसी दिख रही है।